सामने एक बड़ी सी नदी या तालाब है यहां बहोत सारी महिलाएं खड़ी हैं।

किनारे में छोटे-छोटे पत्थर हैं बीच में जलाशय है जहां की पानी का झरना बह रहा है।